यहा पर बहुत सारी मछलिया भी है। मछलियों कों देखकर लग रहा है की मछली बाज़ार है और ये मछलिया जो है वो मरी हुई है। कुछ बड़ी मछलिया--

यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग मे दो तीन प्रकार के बोर्ड टंगे हुए है।

इस चित्र के आजू बाजू मे रैलिंग लगाए गई जो की लकड़ी की है आस पास मे कुछ घास भी लगी हुए है और कुछ पेड़ भी लगे है सामने के और मे एक डस्ट्बिन भी रखा गया जो इसमे कचरा पड़ा हुआ है कुछ बाहर है।

और मे कुछ डिज़ाइन है जो की फ्लावर्स से बने हुए है जिसमे लाल फुल बने हुए है और एक मूर्ति भी रखी गई है।

सामने की और मे एक रोड दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ लोग है और कुछ लोग गाड़ियो से जा रहे है कुछ कार भी दिखाई दे रहे है इसमे पेड़ भी लगाए गए है बोर्ड भी लगा टंगा हुआ है।

इसमे कुछ इस्कूटी है कुछ बाइक है इसमे कुछ लोग बैठे हुए है और आपस मे बातें कर रहे है सामने की और मैदान भी है।